यहाँ पे दो हिरण चल रही हैं ये जंगल में कई छोटे-छोटे पंछी जानवर भी रहते हैं।

यह इस नदी के पठार जैसे है। यहाँ बड़े-बड़े पेड़ है। इसे किनारे में खजूर के पेड़ है।

इस पंडाल को काफी तरह से सजाया गया है। इस पंडाल के किनारे एक कुर्सी लगा हुआ है।

यह कुर्सी काफी चौरी है इस पंडाल के किनारे दरी बिछाया हुआ है।

यहां पर लाइन लगे हुए है आदमी के यहां ए.टी.एम. से सभी आदमी पैसे निका --